न्यू न्यू आइटम्स है अलग ही जैसे राजस्थानी या जयपुरी चीजें लग रही है।

और वेल्डिंग के लिए कोई पर्सन्स लोग आए हुए--

जिसमें काफी स्टेयर्स है और दो लड़के लोग स्टेयर्स चढ़ के वो मंदिर का अ दर्शन करने जा रहे हैं।

घर का मोहला लग रहा है ओर सोसाइटी का जहां कुछ फंक्शनस होने वाला है और--

और आजू बाजू तो सब लोग देख रहे हैं निखार रहे हैं कुछ डेकोरेशनस की तैयारी कर रहे हैं फंक्शनस के लिए।

ऑफिस एरिया लग रहा है जहां अलग अलग ऑफिस हैं और बीच में रस्ता हैं।

और आगे भी कुछ बोर्ड भी मारा हो--

देखने के लिए पर्यटकों के लिए ग्रीनरीज़ भी काफी है और सब अह हिरन कुछ ना कुछ खा रहे हैं।

दवाइयां तक और मेडिकल्स काफी चीजे है और सर लोक वाइस भी ऐसा छोटा-सा शॉप लग रहा है।